वहीं सामने हमें एक आदमी दिखाई दे रहा है जोकि खड़ा है | वहीं जिम में हमें बोहोत सारे जिम इक्यूपमेन्ट भी दिखाई दे रहें हैं |

वहीं ऐ.टी.एम. के बाहर हमें बहोत सारे लोग लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहें हैं | वहीं बाइक भी हमें बहोत सारे दिखाई दे रहीं हैं | बगल में साइकल भी है ।

और ये आदमी पिंक कलर का टी शर्ट पहने हुए है वही जीम मे हमे बहुत सरे इक्विपमेंट दिखाई दे रहे है।

वहीं हमें एक आदमी व औरत भी दिखाई दे रही है | वहीं इस पार्क के पीछे हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है | जो कि पिंक कलर की है ।

जो कि जिम करने के बाद अपनी बॉडी दिखा रहा है। वहीं जिम की जो दिवाले हैं वो मिट्टी की हैं जो उसे सफ़ेद रंग से पेंट किया हुआ है।